बोर्ड पर मार्कर से कुछ लिखा हुआ दिख रहा है।

और उनका मटेरियल जिससे वो सेविंग और कटिंग करते है वह दिख रहा है।

इस चित्र में हमें एक बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है बिल्डिंग के बीच में हमें आर्किटेक्चरी गैप भी नज़र आ रही है।